यह दिन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां लोहे की बैरीकेडिंग लगी हुई भी दिखाई दे रही है।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

यह चारों तरफ से घेरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां शीशे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ दो पहिया वाहन भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

नीचे ईंटे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक टेलीफोन टावर भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे मकाने भी दिखाई दे रही हैं।

यहां बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां एक शीशे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक लोहे से दुकान बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

अब बहुत सारी सामाने भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारी लाइटें लगाई हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक महिला और पुरुष भी दिखाई दे रहा है।

यह लाल कलर की कारपेट भी बिछाई हुई है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ पुरुष बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक मस्जिद का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां नीचे टाइल्स भी लगे हुए दिखाई दे रही है।

यहां एक लाइट जलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यह दिन का समय व्यतीत हो रहा है ।

यहां पे दो आदमी भी दिखाई दे रहे है।

ऊपर प्लास्टिक का त्रिपाल भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक तिरंगा झंडा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी बड़े बड़े इमारतें भी दिखाई दे रही है।

यहां दो पानी बोतलें भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ बल्ब जलते हुए दिखाई दे रही है।

यहां कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर अरोड़ा सुपरमार्ट ड्राई फ्रूट मेनी मोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां लकड़ी का रैक भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक पुरुष भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह रात्रि का समय प्रतीत हो रहा है।

यहां कंप्यूटर भी रखी हुई दिखाई दे रही है।